इसमें मारुती वगेरा सुधर रहीं हैं। इसमें थड़े हैं मारुती सुधार रहे हैं। स्टेपनी नीचे पड़ी है। लाइट जल रही है।

इस गार्डन में धुप आये हैं।

आसमान है। आसमान है उधर ताला के बाद ताला के बाद लफड़ा है।

बड़े बड़े तमुया है पेड़ पौधा हैं।

ये एक होटल है चाय टी।